इस चित्र में एक बिल्डिंग दिखाई गई है।

वहां पे एक एस_बी_आई का बैनर लगा हुआ है।

जहां पर बहोत से बेंचेज लगे हुए हैं।

एक बेंच के ऊपर एक महिला टीचर बैठी हुई है।

हैंगिंग में एक हैंग की हुई है।

जैसे धनिया नींबू कच्चा केला गाजर टमाटर आलू इत्यादि।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

जैसे टमाटर हरि मिर्च भिंडी प्याज --

सड़क के किनारे पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ये ग्रोसरी मार्ट की तस्वीर दिखाई गई हैं।

बहुत सारी खाने पीने की और जरूरत की चीजें दिखाई दे रही हैं।

इस फूल के पेटल्स रेड और व्हाइट शेडेड कलर के हैं।

एक व्यक्ति का जूता दिखाई दे रहा है।

जिसने काले रंग की शूज पहनी हुई है।

जहां पे एक्वेरियम मिलता है वहां --

उसके छत अल्बेस्टर की है।

जहां पर बहोत सारे वॉश बेसिन रखे हुए हैं।

इस चित्र में एक मैरेज हॉल की तस्वीर दिखाई गई है।

उन बेड के ऊपर तीन पेशेंट लेटे हुएं हैं।

बहुत सारे खभों में लाइट लगे हुए हैं।

एक डब्बे के ऊपर कैनोन लिखा हुआ है।

यहां पे एक वॉल क्लॉक लगी हुई है।

इत्यादि वैसलीन के डब्बे भी रखे हुए हैं।

और एक व्हीकलस की बोर्ड लगी हुई है।

इस चित्र में एक प्रज्ञा केंद्र की तस्वीर दिखाई गई है।

जहां पर स्कूल के बाहर राजकीय कृत प्लस टू उच्च विद्यालय रमना लिखा हुआ है।

उस विद्यालय के बाहर दो चैन गेट है।

और कुछ शेल्व्स खाली दिख रहे हैं।

उसके ऊपर पप्पी लिखा हुआ है और प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं।

और बहोत से प्लास्टिक के आइटम रखे हुए हैं।

स्टेज के कोने पर फूल लगे हुए हैं।

जहां पर एक टेबल पर बहुत सारे डी_जे बांध कर रखे हुए हैं।

डीजे के ऊपर पूजा रानी डीजे लिखा हुआ है।

एक घर के अन्दर बहुत सारे पेड़ लगे हुए--

कुछ महिलाएं और पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

उसके बाहर अल्बेस्टर की छत डाली हुई है।

इस चित्र में एक स्टडी सेंटर के बाहर की चित्र दिखाई गई है जहां पर एक बोर्ड लगी हुई है।

बहुत सारी खिड़कियां लगी हुई है।

इस चित्र में एक छत की तस्वीर दिखाई गई है।

दो व्यक्ति खड़े दिखाई दे रहे हैं।